और एक आदमी है जोकि ग्रीन कलर का शर्ट पहने हुए है। सेल्फी ले रहा है। ऐसा लग रहा है देखने में।

पेंट किया गया है और वाइट कलर का भी पेंट किया गया है। अच्छा लग रहा है। आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जोकि देखने में बहोत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं बड़े-बड़े और हरे-हरे --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जोकि देखने में अच्छा दिख रहा है। यह सड़क का चित्र है यहाँ पर बहोत लम्बा सड़क दिख रहा है और --

सूर्य कि किरणे दिखाई दे रही हैं जो कि बहोत सुन्दर लग रही हैं और लग रहा है यहाँ पर जॉगिंग करने आये हैं लोग --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जो कि देकने में बोहोत अच्छा लग रहा हैलग रहा है कोई बाजार है। यहाँ परबोहोत सारे फल नज़र आ रहा हैं जो कि अलग-अलग --

यहाँ पर एक चित्र नज़र आ रहा है जोकि देखने में ऐसा लग रहा है की कोई सड़क का चित्र है। यहाँ पर --

सुबह का समय है। सूर्य की किरणें --